एक गाड़ी खड़ी है सफेद रंग की।

सबके आमने-सामने और बहोत सारी छोटे-छोटे दुकान हैं।

पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

पानी के ऊपर बहुत अच्छा व्यू है।

ये बहुत साफ दिख रहा है।

अभी निकल रहे हैं बैग लेके।

और एक साइकल खड़ी हुई मिली है।

यहाँ पे एक मंदिर दिख रही है बहोत ऊँचा है मंदिर।

घर भी नजर आ रहा है।

एक साइड आर्मी का ड्रेस है।

और कुछ गारियाँ लाइन करके खरे हैं शॉपिंग मॉल के सामने। कुछ लोग --